देखने से तो ये इस इमेज में ये एक कॉलेज लगता है जिसका नाम है मतलूब महमूद मेमोरियल इंटर कॉलेज जिसके सामने हमें तीन कमरे दिख सकते हैं।

बारिश हुई है और बस डूब रही है। थोड़ी-थोड़ी और एक साइड में एक कार है। व्हाइट कलर की और एक सामने बहोत बड़ा सा घर है। एक आदमी --

जो के बहोत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है जिसकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पीवीआर और पीछे रेड कलर की कुर्सिया बिछी हुई है जो कि बहोत ज्यादा खुबसूरत है और बहोत जो के ये खाली पड़ा --